कन्हैया महाविद्यायलाय है जोकि जालौन में स्थित --

सा की इस चित्र में दिखाया जा रहा है यह किसी एलेक्ट्रोनिक की दुकान है।

दरवाजे के उस पार एक मंदिर बना हुआ है। जिसकी चोटी पर कई ढेर सारी पीतल लगी हुई है और इसके आसपास कई सारे बड़े बड़े पौधे पेड़ भी लगे हुए --

जैसा की इस चित्र में दिखाया जा रहा है यहाँ पर किसी लाइब्रेरी का चित्रण है जहाँ पर बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है और उसमे कई ढेर सारी किताबें रखी हुई हैं।

जैसा कि इस चित्र में दिखाया जा रहा है यहाँं पर एक महिला ब्यूटी पार्लर है जिस का नाम ब्लूसिंगटोन मेक-अप एंड सैलून है।